इस तस्वीर में मुझे दो इंसान भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे टीना दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे कई सारे वाशिंग मशीन दिखाई दे रहे हैं और टी_वी दिख रहा है और ओवेन भी दिख रहे हैं और ऐसी भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे बिलबोर्ड भी दिख रहे हैं।

तस्वीर में मुझे कई सारे दरवाजे और खिड़कियां दिख रही--

और मुझे यहां पर एक आईना भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे पॉट दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक मैदान दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कमला दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ पोस्टर्स भी दिख रहे हैं और गेट भी दिख रहा है।

कई सारे टमाटर और आलू भी दिख रहे हैं।

तस्वीर में मुझे शीशे से बनी हुई सेल्फ दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे अलग अलग प्रकार की और अलग अलग रंग के कप दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ इंसान भी दिख रहे हैं।

और लाइट बल्ब भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई तरह के चिप्स दिखायी दे रहे हैं और बिस्किट्स भी दिख रहे है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारे इलेक्ट्रिक पोस भी दिख रहे है और आसमान दिख रखा है।

तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ इंसान भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे परदा भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है जहां पर कई सारे टेबल्स और चेयर्स हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक फैन भी दिख रहा है।

और घर भी दिख रहा है और कुर्सी भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे दरवाजे और खिड़कियां दिख रही है और एक इंसान दिख रहा है और एक बिलबोर्ड दिख रहा और एक लाइट बल्ब दिख रहा।

तस्वीर में मुझे कई सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं और कई सारे टेबल और चेयर दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे एक बिग बोर्ड भी दिख रहा है और लाइट बल्ब भी दिख रहे है।

तस्वीर में मुझे कई सारे कपड़े के फैब्रिक दिख रहे--

इस तस्वीर में मुझे कई सारा शेल्फ दिख रहा है।